गेट पर एक आदमी खड़ा है जिसका चेहरा ब्लैंक है तथा काउंटर पर भी एक इंसान बैठा है जो भी इसका चेहरा नहीं दिख रहा है।

और ऊपर सीलिंग में व्हाइट लाइट का यूज किया गया है जो कि जल रही है।

ऐसा लग रहा है कि किसी शादी या पार्टी का दृश्य है जिसमें एक नीचे मैट पड़ी है जो रेड कलर की और पीछे की साइड टेंट लगा हुआ है।

इस इमेज जो दिखाई दे रहा है वह रीपर के फोटू है जोकि भूसा बनाते हैं।

की साइड में दो शटर लगे हुए हैं और एक पास में चैनल भी लगा हुआ है।

भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप लग रहा है ता तथा नीचे फ्लोर पर सीमेंटेड की ईटों का यूज़ किया गया और जो मशीन है वो ब्लू कलर की दिख रही है।

जिसमें लेडीज और जेंट्स दोनों के कपड़े रखे हुए हैं नीचे की साइड में कुर्सियां पड़ी हुई हैं जिसमें सोकता लगा हुआ है तथा कुर्सियों का हैंडल ब्लैक कलर का हैं।

स्टील के बर्तन रखे हुए हैं। नीचे कुछ ढ़ोलक भी रखे हुए हैं जो कि चॉकलेटी कलर और ब्लैक कलर के --

वो एक ग्रॉसरी शॉप है तथा जिस पर नूडल्स और हल्दी मिर्च के पैकेट टंगे हुए हैं नूडल्स के पैकेट येलो कलर के हैं तथा हल्दी के पैकेट येलो कलर के हैं।

साथ ही बीच में रोड के एक लाइन गई हुई है जिसमें ग्रीन कलर के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

इस इमेज में जो दिखाया गया है वह एक दो मंजिला इमारत है जोकि यलो कलर से पोताई की गई है।

बिल्डिंग के सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें छोटे छोटे पेड़ और कुछ बड़े पौधों का यूज भी किया गया है।

होटल का कलर साइड में चॉकलेटी तथा बीच में ब्लैक है।

इसमें सोफे रखे हुए हैं कुछ सोफे ब्लैक कलर के हैं कुछ सोफे चॉकलेटी कलर के हैं।

इस फोटो में जो दिखाई दे रहा है वो रात का सीन है जो की नदी का किनारा है।

तथा ग्राउंड पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा है और एक भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा है।

नदी के तट पर कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं जो कि कई कलर के लग रहे हैं।

इसके चारो तरफ परदे लगे हुए हैं और कुछ टेबिल्स भी पड़ी हुई है जो की येलो कलर की है।

इस पर बहुत से जानवर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं साथ ही कुछ जानवर बैठे हैं।

क्रेन एक टैंक को उठा रही है जो की ब्लैक कलर का टैंक है और जिस पर लिखा हुआ है जी_टी_पी_एल जो की वाइट कलर से लिखा गया है।

इस इमेज में जो दिखाई दे रहा है वो एक क्रेन लग रही है जिसका कलर वाइट कलर का है और जिसमें कई सारे टायर्स लगे हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं।